आदमी ने व्हाइट टी शर्ट पेहना हुआ दिख रहा है।

मुझे सामने सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा हैं।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

घर का कलर मुझे डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा है।

और सामने मुझे टावर और खंबे नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक फलाई ओवर नजर आ रहा है सामने मुझे एक--

सामने मुझे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे और पेड़ दिखाई--

सामने मुझे एक सड़क नजर आ रही हैं।

रेल्वे स्टेशन पर मुझे एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है बोर्ड पर मुझे फिल्मनाबाद रोड --

दे रही है जिसपर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

मुझे इस फोटो पर एक फूड कोट दिखाई दे रहा है।